और बिजली के तार हैं और कोई जेंट्स लेडीज लोग खड़े है। कोई पुतला और बिजली के तार और पुतले ने कपड़े पहने --

और एक खंबा है और कुछ झाड़ भी है और पीले पीले से कुछ पत्ते से भी डाले हुए हैं।

पंडित लोग़ बैठे हैं। लेडिज भी बैठी हुई हैं और लाइट भी जल रही है चेयर भी रखी हैं। एंड --

यह एक गार्डन है यँहा पे एक जेंट्स खड़ा हुए हैं जिन्होनें वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है हेलमेट भी दिख रहा है एंड कुछ बिल अ पेड़ भी दिख रहे हैं |

यह रोड है ।